और नीचे है ना मक्खन रखे हुए हैं चिप्स रखे हुए हैं बहुत सारे--

और आसपास गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक शॉप खुली हुई है तीन चार बंद हैं।

दो चित्र बने हैं कार्टून के डोरीमोन के और एक बत्तख का--

ये एक मॉल सा है और इसके नीचे जो है बैंक --

और ऊपर लिखा है क्रिएट नंबर ।

ये एक रेड कलर की कुर्सी दिख रही है सामने उसके पीछे एक ब्लैक कलर की कुर्सी है उसी के पास में एक एक ब्लू कलर का और व्हाइट कलर का वॉटर कूलर रखा हुआ है।

और पास में स्टॉल रखा है जहां पर प्लेट्स वगैरह रख रखी है सेलेड वगैरह रख रखा है ये पपल कलर के पर्दों से डेकोरे और आसपास काफी व्यक्ति बैठे हुए--

और उसके ऊपर भी एक और बैनर लगा हुआ है उसके ऊपर है ना कुछ डायमंड बेकरी इंग्लिश में लिखा है यहां पर दो स्टार भी टंगे हुए हैं।

आसपास हरियाली भी है पेड़ भी है छोटे-बड़े सारे तरह के पेड़ लगे हुए हैं।

और ये रानी कबलापति का ब्रिज है और ये तब की फोटो है जब ये बन रहा था।

ये पराठे ये पराठे ये और ये ट्रायंगल में पराठे बने हुए हैं ये वाइट कलर की प्लेट में रखे हुए हैं और ये वाइट कलर की प्लेट के आसपास--

और है ना इसमें वो रेड कलर का पुता हुआ है नीचे कुछ लिखा हुआ है मूर्ति जो है वो एक वो पकड़ी हुई है गिटार पकड़ी हुई है और यह --

आसपास जो हैसामने एक कैलन्डर टंगा है एक जाननमाज़ है बिछी हुई हे इमाम साहब की एक मस्जिद है वो घड़ी हे इलेक्ट्रॉनिक --

और बहोत सारे व्यक्ति एंगे यहां पर और यहां पर जो है व क ब सीढ़िये एंगी बहोत सारी और सीढ़ियो पर भी बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए।

कुछ दिख नहीं रहा आसपास बहुत ही ज्यादा हरियाली हरियाली है और ये बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है।

एक ग्रोसरी शॉप है यहाँ पर सामने एक टेबल रखा हुआ है आसपास बहुत सारा सामान रखा है छत पे एक पंखा लगा है एक लाइट लगी है जो जल रही है।

ये जो सामने इमारत दिख रही है यह एक पेपर स्मॉल इमारत है। यहां पर सात अजूबे ही दुनिया के।

और जो है यहां पर लहसुन की बड़ी-बड़ी दुकानें लगी हुई--